मुझे इस चित्र में एक--

मुझे इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में एक--

मुझे इस चित्र में एक शॉप नजर आ रहा है।

बहोत ज्यादा ट्रैफिक है इस चौराहे के बीच--

मुझे इस चित्र में एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

उस गैरेज का नाम रॉयल कार केयर है।

मुझे इस चित्र में एक डैम नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

कुछ बदल भी दिखाई दे रहे हैं यह एक हिल स्टेशन है।

मुझे इस चित्र में एक टैटू --

उस टैटू पार्लर में एक लड़का टैटू बनवा रहा है।